ब्लू कलर का बोर्ड भी नजर आ रहा है और वाइट कलर की दीवारें भी नजर आ रही है।

जिसके पीठ में बहुत सारे दरारे लगी हुई है।

और एक नीला भी नजर आ रहा है और व्हाइट --

यह एक घर जैसा नजर आ रहा है यहां पर ताड़ की पत्तियां भी नजर आ रही है और एक मेन गेट भी नजर आ रहा है।

साथ में बॉन्डिंग भी किया गया और कुछ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यह एक सत्संग होटल हैं।

और पीला कलर का भी नजर आ रहा है।